यह देखिये सात बज के बारह मिनट यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लोग हुए हैं ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन आने के बाद लोग--

मछलियों की कई प्रजाति रहती हैं और यहाँ पर काला कलर कोई दिख रहा हैं। पानी सफ़ेद हैं जोकि यहाँ पर कई प्रकार की मगरमच्छ मछलियाॅं और प्रजाती --

इस पर कई पंखे भी लगे हैं अहे सफ़ेद कलर का है और यहाँ पर सारी प्लाई की कुर्सियां टेबल डली हुई हैं।

यहाँ देखिये यह कितना पुराना और ख़राब सी जगह दिख रही है जहाँ पर एक कार जा रही है और पेड़ भी लगा है।

यह देखिये ये है मानव नगरिया है जो कि एक बहोत ही अच्छी और पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर देखिये कई वहाँ पर पेड़ लगे हैं सफ़ेद कलर और लाल कलर और पीले कलर से --

देखिये यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है और पानी में कई प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं। जो --

ए देखिये चारों तरफ कुर्सी और टेबल पड़ी हैं ए एक डाइनिंग टेबल हैं जहाँ पर एक साथ बैठकर सब लोग खाना खाया करते हैं। --